इस चित्र में लकड़ी की बल्लीया लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

और नीचे बहुत सारा पानी भी पड़ा हुआ है।

भारी भारी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

पार्क में कुछ लोग बैठें दिखाई दे रहे हैं।

और आसमान भी दिखाई दे रहा है और बहोत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं पड़े हुए।

उसके पास दो कारें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर रेड है।

और एक वॉश बेसन भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ आदमी सोफे पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।